समान भी दिखाई दे रहा है यहां पर एल_ई_डी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

आप्र घर का कलर रेड कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और गाड़ी का कलर भी वाइट कलर का दिख--

मेरे सामने कैफे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे--

सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में बहुत सारे--

परी लाइटिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर नीले कलर के पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ पिलर भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

के सामने एक जिम दिखाई दे रही है जिम में बहुत सारे पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर सीसे भी लेते हुए दिखाई दे रहे है यहां पर कुर्सियों मतलब रेड कलर --

यहां पर कुछ आदमी हमें तसले उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत सारे पाइप भी लगाए हुए--

यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर एक--

यहां पर कुछ बादल भी दिखाई दे रही है बादलों का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ तारे भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर कुछ मेजे भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत सारी लाइटिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है।

गार्डन में कुछ ग्रिल भी दिखाई दे रही है गार्डन में कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं बच्चे रंगोली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

काउंटर पे एक एल_ई_डी भी रखी हुई दिखाई--

पर कस्टमर लॉन्च लंच भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में बहुत सारे स्टैचू भी दिखाई दे रहे हैं गार्डन में बैठने के लिए बेंच भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरे कलर की दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे--

यहां पर दिवारों का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

और ये गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है।

ऊपर बहोत सारे गमले भी रखे हुए दिखाई दे--